इधर कंपनी उम्पनी लोप रहा है है।

बत्ती है माचिस है बढ़िया से बर रहा है लोग आज आता जाता है पूजा करता है मंदिर--

है बहुत लोग सब आया है बहुत लेडिस भी है आदमी भी है ।